टी_वी लगी हुई है छोटी सी बाएं तरफ पीछे की ओर एक कांच का गेट लगा हुआ है।

साथ ही साथ पीछे जो आसमान है वो काफी साफ सुथरा और सुंदर नजर आ रहा है।

ऐपेक्स बिछे हुए हैं बाएं तरफ की जो दीवाल है वो पीले रंग की लगे लग रही है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जो हैवेल्स की है।

यह एक छोटी सी नहर का घाट है जहां पर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है।